exception handling पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: exception क्या है exceptions को checked और अनचेक करना trycatch block और finally block का उपयोग करके exceptions को नियंत्रित करना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं ubuntu linux 1604 os jdk 18 और eclipse 431
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको java और eclipse ide का बुनियादी ज्ञान होना चहिए
यदि नहीं है तो संबंधित java tutorials के लिए कृपया दिखाई गई वेबसाइट पर जाएँ
एक exception अनपेक्षित घटना है जो program के निष्पादन के समय होती है
यह program के सामान्य flow को बाधित करता है और परिणाम गलत होते हैं
उनकी घटना के आधार पर exceptions को unchecked exceptions और checked exceptions के रूप में वर्गीकृत किया गया है
अब हम eclipse खोलेंगे और exceptiondemo नामक now project बनायेंगे
इस project में हम exception handling के प्रदर्शन के लिए आवश्यक classes बनायेंगे
हम नया class marks बनायेंगे
अब marks class को दर्शाने के लिए निम्न code type करें
यह program 5 छात्रों के marks prints करता है जो array marks में संग्रहीत हैं
इस program को रन करें और output का सत्यापन करें
हम देख सकते हैं कि array में values printed हो रही हैं
देखें कि क्या होगा यदि हम एक अरै element को access करने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है
निम्न code type करें
हम जानते हैं कि यहाँ हमारे अरै में केवल 5 elements हैं
लेकिन इस statement में हम index 50 पर element access करने की कोशिश कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है
इस program को रन करें
हम देख सकते हैं कि program line संख्या 7 पर एक message arrayindexoutofboundsexception के साथ terminates होता है
error message exception का विवरण दर्शाता है जैसे exception का प्रकार यह कहाँ घटित हुआ और अन्य विवरण
ध्यान दें कि print statement निष्पादित नहीं हुआ है क्योंकि program error के बाद terminates हो गया है
यह unchecked exception का एक उदाहरण है
unchecked exceptions को runtime exception कहते हैं क्योंकि यह केवल निष्पादन के समय checked होते हैं
वे programming bugs और logical errors को नियंत्रित करते हैं जैसे कि शून्य से संख्या को विभाजित करना और एक array element एक्सेस करना जो मौजूद न हो
अब सीखते हैं कि try catch blockका उपयोग करके exception कैसे नियंत्रित करें
try block में code का यह भाग exception को रेज़ कर सकता है
अनुरूपी catch block object e में exception का विवरण प्राप्त कर सकता है
catch block में हम error messages को प्रदर्शित करने या error से बचने के लिए code लिख सकते हैं
अब eclipse पर जाएँ
पहले code में try block को जोड़ें जो इस प्रकार के exception का कारण होता है
add हमें अनुरूपी catch block जोड़ना चाहिए
निम्न code type करें
यहाँ हम custom message array overflow exception occurred प्रिंट कर रहे हैं
round brackets में हमने arrayindexoutofboundsexception का एक उदाहरण बनाया है
अतः यह block arrayindexoutofboundsexception के exceptions को कैच कर सकता है
अब program now करें
हम देख सकते हैं कि error message printed होता है
लेकिन इस समय उस printing पर ध्यान दें marks array भी निष्पादित होता है
इस तरह से हम exceptions नियंत्रित कर सकते हैं
आगे देखते हैं कि विभिन्न catch blocks का उपयोग कैसे करें
हम उनका उपयोग कर सकते हैं जब block द्वारा विभिन्न प्रकार के exceptions रेज़ होते हैं
try block में निम्न code type करें
code की यह line एक array element को zero द्वारा विभाजित करती है क्योंकि a की value 0 है
तो एक arithmeticexception पहले रेज़ होता है
arithmeticexception को नियंत्रित करने के लिए एक औरcatch block जोड़ें
मौजूदा catch block के बाद निम्न code type करें
program को run करें
इस समय error message arithmetic exception occurred printed होता है क्योंकि यह पहले caught हुआ
code का बाकी भाग try catch block के बाहर निष्पादित होता है
अब checked exceptions के बारे में सीखते हैं
checked exceptions compile time पर checked होते हैं
अतः उन्हें program रन करने से पहले नियंत्रित करना जरूरी है
उदाहरणस्वरूप: file को एक्सेस करना जो मौजूद नहीं है या network system को एक्सेस करना जब network down हो
अब eclipse पर जाएँ और now class marksfile बनाएँ
main method जोड़ें
अब हमें computer में स्थित file को पढ़ना चाहिए
निम्न code type करें
यहाँ filereader object fr null के रूप में इनिसिलीइज है
filereader object का उपयोग विशेष file को access करने और पढ़ने के लिए किया जा सकता है
eclipse एक error दिखायेगा
error को सही करने के लिए इस पर click करें और import filereader java dot io पर double click करें
filereader class को java dot io package से imported किया गया है
हम package और इसके उपयोग के बारे में बाद के tutorial में सीखेंगे
marks नामक file को access करने के लिए जो कि home folder में स्थित है निम्न code type करें
यहाँ दिखाए गए path को अपने system के home folder के साथ बदलें
एक error आती है यह दर्शाती है कि code की यह line filenotfoundexception now सकती है
error पर click करें और surround with try/catch पर double click करें
हम देख सकते हैं कि इस error को सही करने के लिए eclipse स्वतः ही try catch block प्रविष्ट करता है
हम समझ सकते हैं कि यह checked exception है
अब देखते हैं कि finally block का उपयोग कैसे करें
निम्न code type करें
finally block आमतौर पर trycatch block का अनुकरण करता है
इस block का code निष्पादित होता है चाहे exception हुआ हो या नहीं इसमें print statement शामिल होता है
अब finally block में file reference को बंद करें
type करेंfr dot close
अब eclipse दर्शाता है कि यह एक ioexception रेज़ करेगा
error पर click करें और surround with try/catch पर double click करें
program को run करें
हम देख सकते हैं कि filenotfoundexception message printed होता है
ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे home folder में marks named file नहीं है
हम nullpointerexception भी देख सकते हैं क्योंकि fr की value अभी भी नल है
लेकिन हम देख सकते हैं कि finally block में print statement निष्पादित होता है
अपने home folder में marks text file बनाएँ
यदि आप windows यूजर हैं तो अपने local drive में text file बनाएँ और path निर्दिष्ट करें
उदाहरण के लिए यह d: \\marks txt इस तरह निर्दिष्ट हो सकता है
program को फिर से रन करें
हम सत्यापन कर सकते हैं कि marks file बनने के बाद वहाँ exceptions नहीं हैं
inside finally block printed होता है
cleanup operation अर्थात filereader object fr बंद करना यह भी सफलतापूर्वक निष्पादित होता है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा: exception क्या है checked और unchecked exceptions trycatch block और finally block का उपयोग करके exceptions निष्पादित करना
नियतकार्य के रूप में nullpointerexception नामक अन्य runtime exception के बारे में सीखें
इस tutorial के assignment link में दिए गए demo java named java program को देखें
एक exception रेज़ होगा जब आप इस code को an करेंगे
code ज्ञात करें जो exception के लिए जिम्मेदार है
trycatch block का उपयोग करके इसे सही करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे देखें
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है online परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपयाcontact @spokentutorial org पर लिखें
spoken tutorial project एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह script विकास द्वारा अनुवादित है
iit bombay से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद